पोस्टर में कैंब्रिज इंटरनेशनल स्कूल कपूरथला--

या फिर क्रिकेट खेला जाता है सामने लोगों के बैठने का बना हुआ है।

पुल उस साइड के पुल में लाइटें लगी हुई हैं पानी काफी ऊपर तक भरा हुआ है पुल काफी पुराना लग रहा है।

ऊपर काफी सारे ट्री हैं दिन का समय है।

बाहर काफी सारे चेयर सोफे लगे हुए हैं।

साम पीछे काफी सारे पेड़ हैं दिन का टाइम है।

सामने एक बिल्डिंग दिख रही है शायद हॉस्पिटल है बाहर एक एंबुलेंस खड़ा हुआ है।

बिल्डिंग के सामने नीचे कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं साइड में इधर एक वाइट कलर का गाड़ी खड़ा हुआ है दो कुत्ते खड़े हैं।

राइट साइड में एक शॉप है जो बंद है लेफ्ट साइड का शॉप खुला हुआ है।

कुछ लड़के अ झुंड बनाकर खड़े हैं आ--

साइड गार्डन में काफी सारे फूल लगे हुए हैं एक वाइट कलर का फूल दिख रहा है।

बाइक्स कार सामने एक बड़ा सा पेड़ है।

सोनी कंपनी की टी_ वी मिलती है बड़ी-बड़ी कभी भी--

एक आदमी बैठा हुआ है चेयर मे एक साइड में एक राइट साइड मे एक आदमी बैठा लेडिस बैठी हुई है शॉल ओढ़ के--

यहाँ काफी सारे बच्चे खड़े हैं आई थिंक उन्हें सिखाया जा रहा है डांस टाइप का।

वह मिरर के सामने खड़े हैं बड़े-बड़े पंखे लगे हुए हैं लाइट्स लगी हुई हैं।

कुछ कुछ झूमर टाइप के सजाए गए हैं उससे लाइटें लगी है।

कुछ गुलदस्ते को डेकोरेट किया गया हैं जैसे कांच के उपर रखा गया हैं।

एक सड़क है सड़क पे गाड़ियाँ चल रही हैं।

सामने एक मशीन रखा हुआ है जिससे घर घर बनाने के लिए हमें मस मसालों को अ ढलाई करते हैं वो दो मशीनें रखी हुई हैं सामने ट्रैक्टर रखा हुआ है।

यहाँ पर दो मशीनें रखी हुई हैं ढलाई मशीन दो रखी हुई हैं।

साइड में च दो चेयर हैं एक सोफा है।

काफी डब्बे में कुछ सामान भरा हुआ है दराज में करके रखा हुआ है।

ये एक मैरिज हॉल है काफी इसमें डेकोरेट किया गया है।

मेंस सैलून है आप एक एक लड़का बैठा हुआ है चेयर में और एक लड़का उसके--

साइड में पंखा दिख रहा है टेबल फैन दिख रहा है।

यह एक सैंडल की दुकान है यहाँ पे लेडीज सैंडल मिलती हैं काफी सारे सैंडल यहाँ पर टंगे हुए हैं।

नीचे बहुत सारे डब्बे में अल अलमारी में डब्बे में रखे हुए हैं।

कैंडल ब्लैक कलर के डब्बे हैं बहुत सारे डब्बे हैं लाइटें लगी हुई हैं काफी सुंदर लग रहा है दुकान।

बीच में एक लंबी सड़ रो बे रास्ता है जाने को--

पेड़ भी काफी बड़ा है। इसके नीचे छोटे-छोटे पेड़ लगे हुए हैं।

यह एक सड़क है सड़क के दोन राइट साइड --

जे_पी सा जे_पी कोई नंबर लिखा हुआ है किसी का--

सामने कुछ पत्थर के बने हैं टूट वाइट कलर के पत्थर हैं।

पत्थर के कुछ वाइट कलर के पत्थर हैं खम्भे जैसे कुछ बना हुआ है।

गमले हैं गमले के गमले के अंदर पेड़।

छोटे पेड़ लगाए गए हैं साइड में बैच --

पोस्टर में कुछ लिखा हुआ है नीचे।

वाइट कलर के खम्भे में यहाँ पर कचड़ा--